इस इमेज में देखिएगा यहां पर सामने एक कार दिखाई दे रही है उसके ऊपर कलर करता हुआ एक आदमी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक छोटा सा पार्क दिखाई दे रहा है और सामने बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर कुछ बच्चे पेड़ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर देखिएगा इस इमेज में एक गेट दिखाई दे रहा है और अंदर एक महिला नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहाँ पर एक जिम दिखाई दे रहा हैं और कुछ लोग कसरत करते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक बैनर टंगा हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ लोग यहां पर खड़े नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर कुछ कार खड़ी है नीचे और बूट पे लिखा हुआ है राज ऑटो मोबाइल्स वर्कशॉप --

इस इमेज में देखियेगा यहां पर सामने नाव दिखाई दे रही है जिस पे कुछ लोग बैठे हैं और पंछी भी नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज में देखिएगा सामने एक स्टेज दिखाई दे रहा है जहां पर ऊपर कुछ लड़के खड़े नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर सामने एक गेट दिखाई दे रही है और लाइटे जलती रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर सामने बड़ी सी मूर्ति दिखाई दे रही है और सामने दीपक भी जलते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक नदी दिखाई दे रही है और बीच में एक ब्रिज भी नज़र आ रहा है।

इस इमेज में देखीयेगा यहां पर एक चर्च दिखाई दे रहा है और ये महिला कुछ स्पिच देती हुई नजर आ रही है।

इस इमेज मे देखियेगा यहां पर सामने लाइब्रेरी दिखाई दे रही है जहां पर ढेर सारी किताबें नज़र आ रही है।

इस इमेज में देखियेगा सामने एक सड़क दिखाई दे रही है और उस तरफ कुछ दुकानें भी नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहाँ पर बीच में छोटा सा गार्डन है और सामने एक लाल कलर की बड़ी सी इमारत नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे दिखाई दे रही है और कुछ पेड़ भी नजर आ रहे है।